यह बहोत ही सुंदर दुकान दिखाई दे रही है और बाहर से तो बहोत ही सुंदर दिख रही है कपड़े की दुकान और यहाँ पर कांच भी लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक पार्क है और यहाँ पर लोहै का गेट लगा है बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।